अ ताकि जो है इसके किनारे टूटे ना और मजबूत रहे।

ये एक अ हेल्थ क्लब का सेंटर है। इसमें जो है सेहत बनाने के लिए अपनी बॉडी बनाने के लिए काफी मशीने रखी गयी हैं।

ये नदी जो है काफी बड़ी है इस नदी पर जो है पुल बना हुआ है। आने जाने के लिए लोग इसमें --

ये एक नदी का दृश्य है। इस पर एक बांध बना हुआ है। इसपे जो है पानी जो है बहोत तेजी से निकल रहा है।

यह एक बहुत ही बड़ा गेस्ट हाउस है जो काफी बड़े एरिया मे है इसे जो है लाइटों की झालरों से साझाया गया है।

ये भगवान गौतम बुद्ध जी का मंदिर है। इसमे एक गौतम बुद्ध जी की सफ़ेद मूर्ति है।

हम्म गेहूं की फसल धान की फसल जब पक जाती है तो इसके अंदर डाल कर इसमें से जो है गेहूँ और धान को निकला जाता है।

काफी बड़ी मशीन दिखाई दे रही है। इस बहुत ही अच्छी लग रही है।